इस इमेज में हमें एक खेत दिखाया गया है इस खेत में हमें यहां पर धनिया दिखाया गया है धनिया लगाया गया है।

इस इमेज में हमें एक बिल्डिंग दिखाई गई है बड़ी सी बिल्डिंग है जिसका कलर व्हाइट है एंड यहां पे खिड़कियां हैं खिड़कियों पे यहाँ पे ब्लू कलर दिखाया गया है।

इस इमेज के अंदर हमे एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाया गया है इस ग्राउंड छोटी छोटी धुवा लगी हुई है एन्ड यहाँ पे कुछ जालीया सा बना हुवा कुछ दिखाया गया है यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीस भी दिखाए गए है।

इसके अलावा हमें यहां पे एक स्टील का डब्बा नज़र आ रहा है।

और यहाँ पे जो दिवाल है उसमे कुछ इमेजिस बने हुये है और खाने की तस्वीरे लगी हुई है।